बिल्डिंग पर नाम बालूरघाट लिखा हुआ हैं।

अंग्रेजी शराब की कई सारी दुकाने देख पा रही हूं।

यह गाय के पैर मुझे सफेद कलर के दिख रहे हैं।

यह इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर कई सारी टीवीयां फ्रिज --